आदमी भी है पीछे भी बाहर भी आदमी है। ऊपर अलबेस्टर लगा हुआ है। ये बहुत अच्छा लग रहा है स्कूल पेड़-पौधा भी लगा हुआ है। ये स्कूल हम गए हैं बहुत अच्छा यहाँ पर स्कूल है। --

बहुत अच्छा लग रहा है। देख ना स्टूडियो भी सब है।

अ बहुत अच्छा लग रहा है इधर देखने में टेंट लगा हुआ है। आगे माला-उला है सब पहना हुआ है।

यह लड़का है जो की कैमरा इसके पास लाल कलर का शर्ट पहना हुआ है ब्लू कलर का फुल पैंट पहना हुआ है और जूता पहना हुआ है और आगे घर है --

अलग अलग पैंट पहना हुआ है जूता पहना हुआ है। यहाँ पे योगा कर रहा है ये। देखिये कितना अच्छा से योगा कर रहा है और इधर योगा करने वाला है। ये बहुत अच्छा लग रहा है देखने में मतलब ऊपर भी डिप्स मारा जाता है इधर यो योगा कर रहा है।